इस इमेज में जो है हमे यहाँ पे मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो बड़ी सी लम्बी सी मूर्ति है। मुझे ये नही पता वो किसकी मूर्ति है।

और ये जो शॉप है वो बहोत ही पुरानी है और जो लेडी बैठी हुई है उसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है और ये फिश मार --

दिन्नन टाइम का व्यू है।

और इसका जो कलर है वो है क्रीम कलर का और यहाँ पे लाइन्स वगेरा जो भी हो रहा है इसपे ब्राउन कलर और क्रीम कलर का हैं।

नही घर एक दिखाई दे रहा हैं जो है वाइट कलर का हैं और यहाँ पे जो हैं --

सामने से एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ये जो कार खड़ी हुई हैं ये रोड पे खड़ी हुई है।

एक सामने एक लड़का भागता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत सारे पेड़े हैं यहाँ पे जो एक ग्राउंड है।

का व्यू है। यहाँ पे जो है वो कोर्ट है। यहाँ पे जो हैं कुछ लोग आते जा--

यहाँ पे बहोत सारी ट्रीज हैं और सामने एक स्कूल या हाउस वगैरह रहा है। यहाँ पे जो है बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।